और कुछ दूसरी तरफ भी हम उगे हुए देख पा रहे है और बीच -बीच में कुछ पेड़ भी है लंबे -लंबे से क्रिसमस ट्री टेरी की जैसे और हम आगे की तरफ वो सामने आसमान देख पा रहे है जिसमें कुछ बादल हमें नजर आ रहे हैं।

और जिसने शर्ट और जींस की पेंट अअ और निचे चप्पल पहनी हुई है और उसके पीछे हम व्हाइट रंग का एक फ्लैग और एक ब्लू कलर का फ्लैग देख पा रहे हैं ।

देख पा रहे है की यहाँ पे हमे एक कच्चा रास्ता देखने को मिल रहा है जहाँ पे साइड- साइड मे कुछ हरी और भूरि रंग से है और यहाँ पे इंटो की पूरी एक आ-- बंडल भी लगा हुआ है और साइड मे दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से हमे बहुत कुछ कचरा भी देखने को मिल रहा है।

देख सकते है काफी लम्बा सा हॉल नजर आ रहा है हमे बिलकुल वाइट नीट एंड क्लीन एक दम साफ़ सुथरा जहाँ पर कुछ स्टॉल वगैरा लगे हुए है खाने पिने के सामान के लिए।

--और वहाँ पे हम देखे तो अअअ वहाँ पे कुछ मुस्लिम का अअअ साइन बना हुआ है मस्जिद सा बना हुआ हैउसी टाइल्स पे।

बहुत वो प्यारी लग रही है पूरी कार जो है ब्लैक कलर की और उसके आसपास हम देख पा रहे हैं कि काफी सारे लोग छतरियां लेके चल रहे हैं और छतरियों को भी बहुत प्यारे तरीके से सजा के रखा और उसके अंदर लाइटिंग लगी हुई है।

-- देख पा रहे है कि हमें यहाँ पे दो पिलर नजर आ रहे है व्हाइट कलर के गोल- गोल से और यहाँ पे हमें एक अ वो नजर आ रहा हैं गेट है जो कि लोहे का जाली वाला जो कि इस टाइम खोल के रखा हुआ है और उसमें ताला लटक रहा हैं ले--

-- और अंदर की तरफ काफी अंधेरा हमे नजर अा रहा हैऔर दीवार के ऊपर की तरफ गेट पे एंट्री के साईड मे कुछ लिखा हुआ है।